ऊपर कि तरफ़ सिलिंग पर ट्यूब लाईट्स लगे हुए हैं जो व्हाइट कलर की हैं सामने एक रास्ता भी है साइड में दो विंडो भी बने हुए हैं ।

सब्जी की दुकान है यहां पर एक टेबल पर यहां पर पत्ता गोभी केले टमाटर इत्यादि बुकेट में जमे हुए यहां पर केले टांगे हुए हैं।

एक गमला रखा हुआ है जिसमे फ्लावर्स लगे हुए है पौधे लगे हुए है पीछे रेड कलर की वाल है।

सीधे चलकर आ रहा है कुछ लेबर वर्क कर रहे है एक लेबर के हाथ में फावड़ा भी है सामने की तरफ एक बड़ा सा ग्राउंड भी है जिसमे ग्रीन कलर की रसिस लगी हुई है। उसके सामने बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है

एक ग्राउंड है इसमें बहुत बड़ा ग्राउंड है सामने की तरफ जालियां लगी हुई है पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो रेड कलर की है।

इनमे चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है पीछे की तरफ मंजिल नजर आ रही है पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है ऊपर की तरफ आसमान नजर आ रहा है और मरकरी लाइट लगा हुआ है।